यहाँ रोड पर दो भैस है और भैसो के बीच में एक औरत खड़ी है और औरत के ठीक पीछे से एक लड़का साइकिल चलाते हुए आ रहा है।

और जो लड़का साइकिल चला के आ रहा है वो रेड कलर की टी-शर्ट पहना है कुछ घर भी बने हुए है सुन्दर-सुन्दर --

यह दृश्य किसी दुकान का है। दुकान के बाहर फिफ्टी परसेंट ऑफ लिखा गया है।

इस चित्र में कृष्ण जी दिखाई दे रहे हैं। कृष्ण के जी के साथ गइया है उनकी।

और इसमें फ्लावर भी दिखाई दे रहे हैं और इसमें एक लड़का और लड़की खड़ी है मॉल में कुछ सामान लेने के लिये।

और इस सुपर मार्केट के बाहर दो स्कूटियाँ खड़ी हैं।

यह एक बैंक है। बैंक का नाम है पंजाब एंड सिंध बैंक । एक बैनर लगा हुआ है यहाँ पे बैंक बोहोत दूर है।

यह दृश्य एक जंगल का है जंगल में कुछ टेंपरेरी टाइप के जो टेंट हाउस होते हैं वो बना हुआ है।

और जंगल मे कुछ घर भी हैं पूरा जंगल नहीं है पर कुछ घर भी हैं और सामने जंगल है काफी सुंदर दृश्य है।

काफी सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है कुछ घर बने हुए हैं घर के सामनें जंगल है काफी घना जंगल है।

जोकि काफी अच्छा दिखाई दे रहा है इसमें सजावट तो बहुत ही अच्छी की गई है और बढ़िया की गई है और किसी शादी समारोह की तैयारियां हैं।